और यहाँ पर बहोत सारा कीचड़ जमा हो गया है पानी की वजह से यहाँ एक बस भी है ।

यहाँ एक स्कूल हैं जहाँ पर म क्रिस्चियन स्कूल हैं जहाँ पर मदर उम देख ही रही हैं कि हैंडीक्राफ्ट कैसे बना रहैं हैं बच्चे --

सबको अ चार बच्चे बच्चियां खड़े हो कर दिखा रही है हैण्ड क्राफ्ट कर रही है शो --

यह एक भलवा बस हैं जहाँ पर बहोत ही शानदार और नयी लग रहा हैं बस बस का ड्राईवर बस का गेट पकड़ के खड़े हैं एक ये --

और उसके रोड पर जा रही हैं फोर व्हीलर और स्कूटी स्कूटर बहुत तरह का गाड़ी हैं यहाँ खड़ी हैं पेट्रोल पंप पर--

चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट ए एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर--